कर होम डेकोर का सामान तथा और कई आइटम है।

जैसे एक फेरीटेल थीम की तरह यहां पर जो कलर्स यूस किए गए हैं वो भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं।

आदमी बैठा हुआ है जो कंप्यूटर में तथा लैपटॉप में दोनों में साथ साथ काम कर रहा है।

यहां पर बहुत ही खूबसूरत मैदान में छोटी छोटी घास तथा बड़े बड़े पेड़ हैं जो बहुत ज्यादा लुभावने लग रहे हैं।

जो रखा गया है यहां की कूलर जिनके डिजाइन बहुत ही अलग है वो बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं यहां का सारा सामान कंपनी का सामान है।

सजावट है वो देख के ये मराठी लुक लग रहा है पास ही में जो सजावट है वो भी बहुत खुबसूरत है इन्होंने बहुत ही अच्छा मेकअप किया है।

यहां ऊपर छत डल रही है यहां छत मे बजरी सीमेंट का घोल डाला जा रहा है।

यह फोटो बोथरा कॉम्प्लेक्स के बाहर की ली गई है यहां बोथरा कंपलेक्स के बाहर बहोत ज्यादा बाइक्स और स्कूटीज खड़ी है।

यहां पर दोनों साइड खेत है और बीच में लेक है जिस वजह से यह बहुत सुंदर दृश्य है यहां पर पेड़ भी है जो बड़े बड़े हो रखे हैं।